हेलो गाइस जैसे की आप देख पा रहे है की यहाँ पर सो सो चरोसिया है और इस इसका कलर ग्रीन है देखने में और अच्छे लग रहे है और इसका कांटेक्ट नंबर नाइन डबल टू नाइन सिक्स एट टू सिक्स डबल एट है।

हेलो गाइस जैसे की आप देख पा रहे है की यह पंजाब एंड सिंध बैंक है।

के लिए किया जाता है इस दुकान के सजाते ही कितने सुंदर रहे देखिए ।

हेलो गाइस आप देख पा रहे हैं कि यह एक बिल्डिंग है जो बिल्डिंग में तरह-तरह के बोर्ड लगाए गये हैं कुछ लिखा गया बिल्डिंग लोहा की बनी हुई हैं ऊपर बिल्डिंग के भीतर बहुत गंदगी जमी हुई है और यहाँ पर ये लाल कलर के रीबन भी लगाये गये हैं।

हेलो गाइस आप देख पा रहे हैं की यहाँ पर एक मोल है मोल में देख कर के कपड़े रखे गये हैं मोल में कपड़े के लिए किया जाता है यहाँ पर .]